latex on windows using texworks पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: miktex को download और संस्थापित करना
texworks प्रयोग करके बुनियादी latex documents लिखना
खोये हुए packages को download करने के लिए miktex configure करना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
अब texworks की प्रमुख़ विशेषताओं को देखते हैं
यह platform independent है
इसमें एक सन्निहित pdf reader होता है
यह भारतीय भाषा लिखने का supports करता है
texworks शुरू करने से पहले हमें miktex संस्थापित करना है
miktex windows के लिए tex या latex और सम्बंधित programs का नवीनतम कार्यान्वयन है
यह windows पर latex में बुनियादी documents बनाने के लिए आवश्यक packages रखता है इसके अतिरिक्त texworks miktex संस्थापन के साथ उपलब्ध default editor है
www miktex org website पर जाएँ
बताये गए miktex संस्थापक के लिए download link पर click करें यह miktex संस्थापक download करेगा
इसे अपने desktop पर download और सेव करें
यह बहुत बड़ी file है लगभग 154 mega bytes अतः यह download होने के लिए कुछ समय लेगी
मैंने यह file पहले ही downloaded कर ली है यह यहाँ है
संस्थापन शुरू करने के लिए इस file पर double click करें
check box पर click करें और next पर click करें
सारे default विकल्पों को चुनें
संस्थापन लगभग 5 से 10 minutes का समय लेगा
मैंने miktex को अपने computer पर पहले ही संस्थापित कर लिया है अतः मैं संस्थापन के साथ आगे नहीं जाऊँगी
अपने computer पर miktex को सफलतापूर्वक संस्थापित करने के बाद
अब देखते हैं कि texworks editor जो miktex के साथ आता है कैसे प्रयोग होता है
windows के start button पर click करें
all programs पर click करें
miktex29 पर click करें
texworks पर click करें
texworks editor खुलेगा
अब मैं पहले से मौजूद latex document को खोलती हूँ
मैं file पर click करुँगी फिर open पर click करुँगी और directory चुनूँगी फिर मैं hello tex फाइल खोलूँगी
आप देख सकते हैं कि इस file में लिखा हुआ text रंगीन है
इसे syntax highlighting कहते हैं यह यूज़र को latex syntax और यूज़र कंटेंट के बीच अंतर करने में मदद करता है
latex syntax हाईलाइट न होने की स्थिति में निम्न करें
texworks window में menu bar पर उपलब्ध format button पर click करें
syntax colouring चुनें और फिर latex पर click करें
अगर आप चाहते हैं कि जो आपने latex document बनाया है उस पर texworks हर बार syntax highlighting करे तो निम्न करें
menu bar पर edit पर click करें फिर preferences पर click करें
editor टैब में ड्राप डाउन button पर click करें जो syntax colouring के विकल्प देता है
latex चुनें और फिर ok पर click करें
इस तरह से भविष्य में बनाये जाने वाले सभी documents पर syntax highlighting की जाएगी
अब हम अपने latex document को कंपाइल करने के लिए तैयार हैं
compilation शुरू करने के लिए ctrl और t कीज़ एकसाथ दबाएं
एक बार जब बिना गलती के document compiled होता है तो परिणामी pdf खोला जायेगा
ध्यान दें कि यह pdf reader texworks के साथ आता है
compiled किये हुए pdf documents को दिखाने के लिए texworks के द्वारा प्रयोग हुआ यह default pdf reader है
हम latex संस्थापन के मूल तत्व समाप्त कर चुके हैं
यह बहुत सी formatting आवश्यकताओं के लिए उचित है
आप इस tutorial को छोड़ भी सकते हैं playlist पर शेष latex tutorials का अभ्यास करें
अन्य tutorials का अभ्यास करते समय आपको निम्न error message भी मिल सकता है the required file abc is missing it is a part of the following package: xyz
यहाँ package xyz के अन्दर एक file abc
आपके case के लिए abc और xyz निर्दिष्ट किये जायेंगे
जब आपको इस तरह का एक error message मिलता है तो इस tutorial का शेष भाग सुनें
इस tutorial के शेष भाग में उस समस्या को हल करने के दो तरीके समझाए गए हैं उनमें से एक आपके लिए कार्य करना चाहिए
goodbye for now
क्या आप जानना चाहते हैं कि निम्न प्रकार की एक समस्या को कैसे हल करना है: इस tutorial के शेष भाग को सुनें और मेरे साथ अभ्यास करें
अब एक beamer document को compile करते हैं
beamer package default रूप से miktex setup में जो हमने संस्थापित किया है सम्मिलित नहीं है
इसका मतलब है कि हमें : किसी अन्य source से download करना है और इसे हमारे मौजूदा miktex वितरण में जोड़ना है
एक खोये हुए package को संस्थापित करने के दो तरीके होते हैं
एक तरीका यह है कि latex document कम्पाइल करते समय इसे संस्थापित करें
औसतन इस latex document को एक ऐसे package की ज़रुरत होगी जो package miktex वितरण में उपलब्ध नहीं है
दूसरा तरीका है manually चुनना और miktex का package manager प्रयोग करके एक package संस्थापित करना
अब पहला तरीका देखते हैं
हम खोलेंगे और एक latex document compile करेंगे जिसे internet से packages संस्थापित करने के लिए miktex की आवश्यकता है
पहले texworks editor को बंद करें
ऐसा होना चाहिए कि हम प्रबंधक विशेषाधिकार से tex file खोलें
start button पर click करें फिर all programs पर click करें miktex29 पर click करें
texworks पर right click करें और run as administrator चुनें
यह प्रबंधक विशेषाधिकार के साथ texworks editor का आरम्भ करेगा
अब file पर click करें फिर open पर click करें beamer tex file चुनें
compilation शुरू करने के लिए ctrl और t कीज़ एकसाथ दबाएं
package installation dialog box खुलेगा
यह खोये हुए package beamer cls को संस्थापित करने के लिए कहेगा
इस dialog box पर change button पर click करें
change package repository dialog box खुलेगा
packages shall be installed from the internet विकल्प चुनें
connection settings पर click करें
यह proxy settings को configure करने के लिए आपसे पूछेगा
अगर आप proxy network पर नहीं हैं तो use proxy server चेक बॉक्स को अनचेक छोड़ दें
क्योंकि मैं proxy network पर हूँ मैं चेक बॉक्स पर क्लिक करके विकल्प को सक्षम करुँगी
मैं proxy address प्रविष्ट करुँगी
मैं proxy port number प्रविष्ट करुँगी
मैं authentication required विकल्प को उससे सम्बंधित चेक बॉक्स पर क्लिक करके सक्षम करुँगी
ok पर click करती हूँ और फिर next पर
यह मुझसे proxy यूज़रनेम और password के लिए पूछेगा
मैं जानकारी प्रविष्ट करुँगी और ok पर click करुँगी
यह अनेक remote package repositories की सूची दिखायेगा
सूची में से एक चुनें और finish पर click करें
install पर click करें
यह beamer cls package संस्थापित करेगा
एक बार फिर package installation dialog box खुलेगा
यह खोये हुए package pgfcore sty को संस्थापित करने के लिए पूछेगा
आप always show this dialog before installing packages विकल्प को अनचेक कर सकते हैं
अगर आप यह करते हैं तो अनुपस्थित package के होने पर भी miktex आपसे दोबारा नहीं पूछेगा
install पर click करें
अब अगर कोई any खोये हुए packages हों तो यह आपकी अनुमति के बिना इसे स्वतः ही संस्थापित करेगा
एक बार जब संस्थापन समाप्त होता है तो यह compilation ख़त्म करेगा और pdf output खोलेगा
हम देख सकते हैं कि हमने एक beamer document को सफलतापूर्वक compiled कर लिया है
अब खोये हुए packages को संस्थापित करने का दूसरा तरीका देखते हैं
windows के start button पर click करें
all programs पर click करें
miktex29 पर click करें
maintenance admin पर click करें
package manager admin पर क्लिक करें
यह उपलब्ध अनेक packages की सूची को दिखायेगा
अब इस सूची पर एक निगाह डालते हैं
सूची में छः columns हैं
ये हैं name category size packaged date installed on date और title
installed on column हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है
packages जिनके लिए यह column खाली है दिखाता है कि ये packages संस्थापित नहीं किये गए हैं
अब देखते हैं कि एक विशेष package को संस्थापित कैसे करते हैं
उदाहरण के लिए मैं package abc चुनती choose
ध्यान दें कि जैसे ही मैं package चुनती choose तो ऊपर बायीं तरफ का plus button सक्षम हो जाता है
plus button संस्थापन का button है plus button पर click करें
एक window खुलेगी जो उन packages को सूचीबद्ध करेगा जो आपने संस्थापित करने या न करने के लिए चुनें हैं
proceed पर click करें
क्योंकि मैंने proxy network connection को कॉन्फ़िगर किया है तो यह मुझसे proxy यूज़रनेम और password पूछेगा
अब मैं अपना यूज़रनेम और password type करती हूँ
ok पर click करें
एक window खुलेगी जो संस्थापन के लिए चुने हुए package के download progress को दिखाएगी
यह संभव है कि remote server connectivity की समस्या के कारण आपका अनुरोधित package download न हो पाये
उस स्थिति में package संग्राहक repository को बदलें और दोबारा प्रयास करें
हम देख सकते हैं कि चुने हुए package का संस्थापन समाप्त हो गया है
close पर click करें
package की सूची refreshed की जाएगी
ध्यान दें कि 11 september 2013 installed on column में package abc के लिए दिखता है
यह latex on windows using texworks tutorial को समाप्त करता है
इस tutorial में हमने सीखा:miktex को download और संस्थापन करना
texworks प्रयोग करके latex document के मूल तत्व लिखना
दो भिन्न तरीकों से खोये हुए packages को download करने के लिए miktex configure करना
निम्न लिंक पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team spoken tutorials का प्रयोग करके कार्यशालाएं चलाती है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी